नाँव पे चढ़ के आदमी लोग घुमते है।

सुन्दर सा बकरी का बच्चा --

सर्विसिंग हो रहा गैरेज में।

कस्टमर का वेट कर रहे हैं।

और यहाँ अच्छा-अच्छा खाना भी मिलते हैं।

जिम करने के बाद अच्छा-खासा बॉडी बनाते हे ।